यहाँ एक महाविद्यालय जो की सर्किल में बना हुआ है यहाँ एक बैनर के ऊपर महाविद्यालय लिखा है यहाँ पे बिल्डिंग का कलर वाइट और ब्लू और ब्लैक है यहाँ पे छोटे-छोटे विंडो लगे हुए है जो की बहुत छोटे-बड़े है।

यह एक कटिंग शॉप जो कि बहुत बड़ी है। यहाँ पे बहुत सारी लाइटे लगी हुई हैं यहाँ राइट- साइड बहुत सारे फैन हैं और यहाँ घड़ी भी लगी है जो कि घड़ी मे अभी--

पे एम म येलो और ऑरेंज है यहां पे राइट साइड बहुत सारे पेड़-पौधे है यहां पे एक खंभा जो कि बहुत ही सारे तार लगे हुए है उसमे --